मुझे इस पिक्चर में एच_डी_एफ_सी बैंक लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

मुझे इस पिक्चर मे बाइक दिखाई दे रही है।

मुझे इस पिक्चर में श्याम रिजॉर्ट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

मुझे इस पिक्चर में लाइट दिखाई दे रही है।

मुझे इस पिक्चर में कई लोग दिखाई दे रहे हैं।

दे रहें हैं मुझे इस पिक्चर में घास दिखाई दे रहीं हैं।

मुझे इस पिक्चर में कार दिखाई दे रही है।

मुझे इस पिक्चर में दो कार दिखाई दे रही हैं।

मुझे इस पिक्चर में आसमान दिखाई दे रहा है।

मुझे इस पिक्चर में आसमान दिखाई दे रहा हे।